मिट्टी भी नजर आ रही है जिनपे छोटे छोटे पिंक कलर के फोबल्स जेसे भी लग रहा है ये पानी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है।

और भी मिरचिया और बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर कुछ स्टील के बर्तन रखे हुवे है तोलने के लिए मशीन भी यह पर रखी हुई है।

एक ऑफिस हे जहापर काफी सारे कंप्यूटर रखे हुए है और टेबल पर काफी सारे पेज भी रखे हुए है और यहाँ पर बहुतसारे लोग भी कम कर रहे है। उप --

यह एक नदी है जहा पर कुछ बच्चे स्नान करने के लिए आए हुए है।

ये एक समुद्र है और समुद्र मे काफी सारी नाव दिख रही है और एक आदमी यह पर रेड और कलर की शर्ट जीन्स पहने हुए खडा हुआ है सिर पर टोपी लगाए हुए है और--

पे सारा सामना फैला हुवा है इधर उधर बहुत काफी सारे लोग यह पर घूम फिर रहे है और दूर दूर काही पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।